जिनमे कपडे रखे है।

एक बतक का कलर मुझे ब्राउन स' --

यहां पर मुझे मंदिर का गेट दिख रहा है और यहां पर--

मुझे यहाँ पर कुछ लेडिज दिख रहीं हैं।

एक ने लाल कलर की साड़ी पहनी--

उसमें खिड़कियाँ भी दिख रही है।

यहां पर मुझे पिंक कलर का--

यहाँ मुझे बहुत से।

यहाँ पर मुझे कुछ बच्चे दिख रहे हैं और जो कि खेलते हुए दिख रहे हैं और--

खिड़की दिख रही है और--

यहाँ पर मुझे एक घर सा दिख रहा है जिसमें दरवाज़ा भी है और --